दिखाई दे रही है बाहर यहां पर तीन चार कार खड़ी है और एक ऑटो भी खड़ा हुआ है।

एक जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां पर ढेर सारे पेड़ लगे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है जहां पर बेड पर एक मोटा सा कंबल भी नजर आ रहा है।

उसपर एक दिल का चित्र बना है।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

जहां पर बाहर देखियेगा कुर्सी सोफा और टेबल लगे हुए नजर आ रहे हैं।

और पीले कलर क में कुछ लिखा हुआ है जोगी महल चौकी --

और ऊपर की ओर देखिएगा काफी सारे पंखे भी--

यहां पर एक लड़की खड़ी है जिसके बाल खुले हैं और जिसने जींस और टॉप पहना हुआ है वह अपनी सेल्फी लेते हुए --

ऊपर बड़े-बड़े अक्षरों मे वाडीलाल आइसक्रीम लिखा हुआ है और यहां पर आइसक्रीम की बड़ी सी पिक भी दिखाई दे रही है।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

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है और यहां पर देखियेगा बड़ी सी इमारत नज़र आ रही है।

बाहर बड़ा सा गेट सजाया गया है और यहां पर बाहर बलून वाला भी दिख रहा है अंदर लोगों की --

नीचे देखिएगा एक सफेद रंग की कार खड़ी हुई है और साइड में यहां पर बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ नजर आ रहा है।